यहाँ पर बोहोत अच्छा डिजाईन हुआ है और यहाँ पर बोहोत अच्छे अच्छे मोनयूमेंट हैं।

जैसा के आप यहाँ देख सकते है ये यहाँ पे बोहोत सा ये एक दुकान है और यहाँ पे वाटर बोतल कोल्ड ड्रिंक्स एण्ड बोहोत सारी खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं।

क रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक पर रेल गाड़ी भी है और रेल गाड़ी के आस पास बहुत बड़ा मैदान और हरियाली भी है।